दो स्टूल पीले पट्टीदार काले--

जिसमें लिखा हुआ है प्रवेश निषेध है यह एक आम रास्ता नहीं है।

जो की सफेद रंग की बनियान पेहने हुए है तथा सफेद रंग का लोअर भी पेहन रखा है।

यह एक स्कूल है। स्कूल के बाहेर --

और इस पर बिरगा माउंट बोर्ड साइकिल और अग्रवाल साइकिल लिखा हुआ है।

डिवाइडर के ऊपर लाइट के दो खंभे लगे हुए है।

और रंग लाल रंग का हांडा लिखा हुआ है।

मेट्रो टेरेन के अंदर एक रॉड लगा हुआ है।

और कई चेयर भी पड़ी हुई है।

इस पेट्रोल पंप पर कई वर्कर काम कर रहे हैं।

एक स्कूल है लक्ष्य इंटरनेशनल एकडमी ।

और दूसरी तरफ एक आदमी चुनरी लिए--

दुकान के अंदर कई प्रकार के चिप्स भी रखे हुए हैं।

तथा उसके उपर टीन सेट पड़ा हुआ है।

होटल के ऊपर की तरफ नीले व लाल कलर के गुब्बारे भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक खंभा लगा हुआ है खंभों के ऊपर से--

चार बैट पर टोन लिखा है।

यह एच_पी पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप पर एक सफेद रंग की कार खड़ी हुई --

सैंडिल जूते भी रखे हुए हैं।

यह एक होटल है होटल मे लाल रंग की--

जिला परिषर में एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है जो--

इस मेले के अंदर एक बहोत बड़ा पंडाल लगा हुआ--

वहां नमकीन और रसगुल्ला सब कुछ रखा हुआ है।

और गमले के पौधे लगे हुए--

इस दुकान के औरत बेच रही है।

और दूल्हा शेरवानी सूट पहने हुए है।

रोड के किनारे दोनों तरफ--